दो टेबल रखे हुए हैं जो ऑफिस में जॉइंट हैं।

डोमिनोस की गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है एक ऑटो खड़ी दिखाई दे रही है।

किशमिश शक्कर शैंपू इत्यादि सारा ही खाने का सामान दिखाई दे रहा है चाय पत्ती--

एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए जिसमें पिंक कलर की रेल चल रही है।